एवं इसमें के सामने एक टेबल पर चश्मा रखा हुआ है और सैलून का कुछ सामान रखा है

डांस सीखा रही है इसके सामने एक मिरर लगा हुआ है।

ये फोटो एक बिल्डिंग की है एवं इस बिल्डिंग मे बहोत सारी खिड़किया लगी हुई है।

ये फोटो एक दुकान की हैं जिसमें मिल्क पाउडर के डिब्बे साबुन सोडा शैम्पू तेल की कुप्पी रखी हुई हैं।

ये फोटो एक ग्राउंड की है यहाँ पर कुछ लोग बेठे हुए है एवं यहाँ पर कुछ लोग खेल भी रहे हैं।

ये फोटो एक प्लेग्राउन्ड की है यहाँ पर बहुत सारे प्लयेर्स खड़े हुए है।

कुछ हिरण है इनमे से एक हिरण चारा खा रहा है एवं कुछ हिरण खड़े हुए है।